आदमी के पास एक डलिया भी रखी हुई है।

सफेद रंग के बड़े बड़े गुलदस्ते रखे हैं।

अं ये एक बड़ा सारा घर है।